यह ल सखा लखीसराय के है।

यह होटल में रहने खाने की अच्छी सुविधा दी गई है ।

गोल-गोल बना के खेल रहे हैं बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ यहाँ पे हैं।

यह एक रोड है। इस रोड से पहाड़ की ओर रास्ता है।

इस चाय वाले दूकान का नाम तंदूरी चाय स्पेशलिस्ट रखा गया है ।

केमिस्ट्री तो मोहित सर के पास ही जाते हैं।

यह एक डॉक्टर का केबिन है यहाँ पे बायोलॉजी के बहुत सारे हड्डियां रखी गई हैं ।

यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग पूजा करने प्रर्थना करने के लिए आते हैं ।